दुकान के दीवार पर हरे रंग का डब्बा लगाया हुआ है।

यह छबी खुले क्षेत्र का है छबि में एक रथ है रथ पर फूल की मालाएं लगाई हुई है।

आस पास इमारत है इमारतों की दीवार का रंग सफेद हरा और हल्का गुलाबी रंग का है आसपास कई तरह के लोग हैं लोग ने बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

यह छवि एक मछली दुकान के अंदर का तस्वीर है मछली दुकान के अंदर लाल रंग के चद्दर पर कई तरह के मछलियां बिछाए हुए हैं।

दुकान के बारे में बड़ा पोस्टर है पोस्टर लाल और पीले रंग का है पोस्टर पर श्री बालाजी प्लास्टिक एंड होम केयर लिखा हुआ है।

दुकान के दीवार का रंग पीला और भूरे रंग का है दुकान के बाहर एक बोर्ड है बोर्ड भूरे रंग का है।

अभी में मोटरसाइकिल खड़ी है मोटरसाइकिल काले रंग की है इमारत की छत पर--

यह छबि एक दुकान के बाहर का तस्वीर है दुकान के बाहर एक पोस्टर है पोस्टर पर प्रियांशी फेब्रीकेशन लिखा हुआ है जो सफेद रंग से लिखा हुआ है।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

फूल की मालाएं गुलाबी लाल और सफेद रंग की है।

दीवार पर केदारनाथ धाम लिखा हुआ है जो नीले रंग से लिखा हुआ है छवि में कुछ लोग हैं।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

ऊपर की छत पर लाइट है लाइट सफेद रंग की है कमरे के बाहर फुल की मालाएं लगाए हुए हैं।